और जे खिड़कियाँ है जिनमे जो कांच को लगो हुओ है। दुइ पोस्टर लगे हुए --

जाव में एक भईया जात है।

उदय में पेडें खड़े हैं। नीचे छोटे पेडें बड़े पेडें हैं।

घर हैं गे गेट हैं। कमरा बने हुए हैं और जो पत्थर को बनो हो पुरो । जमीन पे पलस्तर ना है ऐसे ही सीमेंट परो हुओ है।

एक बड़ी सी कुछ उचाईं से नजर आ रहो है। जा में का पेड़ दिखाई देत है और जो पत्थर है जो नीले-नीले हैं।